किसी होटल रूम की लग रही है जहां एक बिस्तर है जिस पर सफेद कलर की चादर तथा दो तकियें रखे हुए हैं।

लाल कलर का कंबल और साथ ही में एक टी_वी का रिमोट भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर सफेद कलर के अक्षर से थे बेकर्स रूम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दुकान के बाहर पारदर्शी शीशा लगा हुआ है।

पीछे की ओर एक गुलाबी कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर पिंक विला लिखा हुआ है।

तस्वीर किसी सैलून का है जहां हमे दो शख्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सीलिंग पर कई सारी लाईटें सफेद जो सफेद कलर की है वो जलती हुई दिखाई दे रही --

एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी है जिसमें अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स भर कर रखे हैं।

यहां हमे सामने की ओर एक काले रंग सा बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक शख्स जिसने लाल कलर की शर्ट एवं काले कलर की जैकेट पहन रखी है कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

किनारे किनारे चौकोर आकार में अलग अलग प्रजाति वाले पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं।

जिसके ऊपर सैनिक साइकिल मार्ट लिखा हुआ है नजर आ रहा है।

तथा रंग बिरंगे रिबनो से सजावट की गई है वॉल भी दिखाई दे रही है।

तस्वीर किसी स्टेशनरी शॉप की है यहां हमें दुकान के भीतर कई सारी रैक्स में अलग अलग प्रकार के किताबें और कॉपियां देखने को मिल सकती है।

तस्वीर किसी जनरल स्टोर का है जहां हमें सामने की ओर एक बड़ा सा रैक बना हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक ट्रॉली बैग्स का प्रचार वाला स्टाल लगा हुआ है।

एवं इसके द्वारा पर फूलों की माला से सजावट की गई है।

यहां एक त्रिशूल भी लगा हुआ है और द्वार पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां कई सारे छोटे आकार के नाव लगी हुई दिखाई दे रही है जो सफेद तथा नीले रंग की है।

और जमीन पर एक लाल कलर का कपड़ा बिछा कर उसमे अलग अलग प्रकार वाली और साइज वाली मछलियां रखी हुई दिखाई दे रही--

इसके ठीक सामने बहुत बड़ी खाली सड़क दिखाई दे रही है जिस पर एक शख्स साइकिल से आगे की ओर जाता हुआ दिख रहा है।

यहां और भी कई सारे तरह तरह के झूले मौजूद है जिस पर कई सारे बच्चे झूल रहे हैं।

तस्वीर में सामने की ओर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

तस्वीर किसी मेस्टरों स्टेशन का है जहां हमें सामने की ओर एक मेट्रो खड़ी दिखाई दे रही है।

नीचे एक शक्स बैठा हुआ नजर आ रहा है तथा दुकान के भीतर काउंटर लगे हैं अगर कई सारी चीजें सजा कर रखी गई है।

फिर किसी बैंक के ए_टी_एम के बाहर की ऊपर में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर किसी जिम के अंदर का है जहां हमें एक्सरसाइज करने वाले कई सारे मशीने एवं वजन वाले प्लेटें दिखाई दे रही है।

तस्वीर किसी कॉलेज की बाहर का है इसके एंट्रेंस गेट पर एक बड़ा सा हरे रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

यहां कई सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है इसे देखने के लिए।

आंगन में सामने की ओर एक छोटी सी दीवाल बनी हुई नजर आ रही है।

आगे की ओर एक सख्श खड़ा होकर अपनी तस्वीर खींचाता हुआ दिख रहा है।